अपने काम से वापस आने के लिए भी इस्तेमाल करते है या फिर अपने गांव जाने के लिए भी इस्तेमाल करते --

टोटल पाँच ए.टी.एम. है ए.टी.एम. का फुल फॉर्म होता है ऑटोमैटिक टेलर मशीन और यहाँ पे --

ये एक जिम है इस जिम में ढेर सारे ट्रेडमिल लगे हुए है और यहां पे एक --